और वहाँ पे हमे एक लकड़ी की फ्रेम बिठाता हुआ एक एक कारीगर दिखाई दे रहा है जो की बहुत सारे लोगो के साथ खड़ा नजर आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारे पिलर दिखाई दे रहे हैं।

और हमे यहाँ पर एक कार खड़ी दिखाई दे रही है और हमे यहाँ पर बहुत सारे रोड दिखाई दे रहे है और हमे यहाँ हमे नारियल के झाड़ खड़े दिखाई दे रहे है और हमे यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते नजर आ रहे है और हमे यहाँ पर एक बैंक दिखाई दे रही हैं ।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग हमें लाल कलर की दिख रही हैं बिल्डिंग का कलर हमें लाल नजर आ रहा है और हमे यहाँ पर बहुत सारे पाइप दिखाई दे रहे हैं जो की छत तक जाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर हमें बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारे बक्से रखे हुए नजर आ रहे हैं और हमें यहाँ पर लोहे की बनी हुई गैलरी दिखाई दे रही हैं।

और वहाँ पर हमें एक कांच की खिड़की दिखाई दे रही है जो कि बंद दिखाई दे रही है और हमें यहाँ पर पंखे दिखाई दे रहे हैं जो की एक कलर पंखे का सफेद है और एक पंखे का कलर हमें काला दिखाई दे रहा है।

कपड़े दिखाई दे रही हैसाथ साड़ी का कलर हमे नीला दिखाई दे रहा है और उसके उपर हमे कारीगरी दिखाई दे रही है और हमे यहाँ यहाँ पर बहुत सारे रंग के साड़ी दिखाई दे रही है जिस--

यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है कमरे में हमे एक लाइट दिखाई दे रहा है और हमे यहाँ पर एक खिड़की दिखाई दे रही है और हमे यहाँ पर दो बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें से एक बोर्ड काले कलर का नज़र आ रहा है।

और यहाँ पे हमे बहुत सारी गाडियाँ पार्क दिखाई दे रही है और उसके पीछे हमें एक बाईक दिखाई दे रही है जो कि काले कलर की नजर आ रही है।

ओर इसके नीचे हमे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो की बहुत अच्छा लग रहा है और हमे यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते दिखाई दे रहे है।

बहुत ही बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में हमेँ बहुत सारी घास दिखाई दे रही है गार्डन के बीचों बीच हमें एक रस्ता दिखाई दे रहा है।

और हमें यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो की नारियल के नजर आ रहे हैं और हमे यहाँ पर बहुत सारे सादे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और हमे यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं बिल्डिंगों के पास हमे बहुत सारे खंबे दिखाई दे रहे हैं जो कि बाहर जाते हुए नज़र आ --

और उसके अन्दर हमे बहुत सारे फूटबॉल रखे दिखाई दे रहे है और उसमें बहुत सारे कपड़े नजर आ रहे है और उसमें बहुत सारे घड़ी कर रहे वो कपड़े दिखाई दे रहे है।